और डिजाइन बहुत ही अच्छा किया हुआ है नीचे बहुत सारा टाइल्स लगा हुआ है।

और इधर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि ऊपर बैठ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं।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

इस चित्र में एक टेबल दिख रहा है जिसके ऊपर एक प्लेट और गिलास दोहा रखे हुए हैं।

एक गिलास में चटनी रखा हुआ है और पानी जग में रखा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि पौधे उगा रहे हैं।

सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं एक आदमी एक बोरा लेके जा रहा है।

और एक पेट्रोल पंप दिख रहा है इधर छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं।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

त्रि में बहुत ही बड़े बड़े घर दिख रहा है और बहुत सारी मशीनें दिख रहे हैं।

चित्र में बहुत ही घना जंगल दिख रहा है और इधर बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है।

और पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे दिख रहे हैं और एक मंदिर बनाया हुआ है।

चित्र में एक मेला लगा हुआ है जिसमें ब्रेक डांस और झूला लगे हुए हैं।

इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जोकि रोड पे ढोलक बजा रहे हैं।

इस चित्र में एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिस दिख रहा है।

जो कि शीशे का लग रहा है और एक बॉक्स रखा हुआ है।

इस चित्र में एक बड़ा सा नदी दिख रहा है जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है।

और बहुत सारी लोहे लगे हुए हैं और दूर दूर में बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।